लिबर ऑफिस इंप्रेस में पिक्चर्स और ऑब्जेक्ट्स इनसर्टप्रविष्ट करने पर ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि प्रस्तुति में पिक्चर्स और ऑब्जेक्ट्स कैसे प्रविष्ट करें
पिक्चर्स और ऑब्जेक्ट्स को फॉर्मेट करना
प्रस्तुति के अंदर और बाहर हाइपरलिंक करना और टेबल्स प्रविष्ट करना
यहाँ हम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में उबंटु लिनक्स वर्जन 1004 और लिबर ऑफिस वर्जन 334 का उपयोग कर रहे हैं
वेब ब्राउजर एड्रेस बार में स्क्रीन पर दिखने वाली उर्ल टाइप करें
यह एक इमेज दिखाता है
अब इमेज पर राइट क्लिक करें और सेव इमेज एएस ऑप्शन चुनें
एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा
नेम फील्ड में ओपन सोर्स bartpng पहले से ही प्रदर्शित है
मैं लोकेशन के रूप में डेस्क्टॉप चुनूँगा और सेव बटन पर क्लिक करूँगा
चलिए अपनी प्रस्तुति sample इम्प्रेस को ओपन करते हैं जिसे हमने पहले ही सेव किया हुआ है
अब हम देखेंगे कि इस प्रस्तुति में पिक्चर कैसे जोड़ें
मुख्य मेन्यू में इंसर्ट पर क्लिक करें और फिर पिक्चर पर क्लिक करें
अब फ्रॉम फाइल ऑप्शन पर क्लिक करें
एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा
फोल्डर को चुनें जिससे आप पिक्चर प्रविष्ट करना चाहते हैं
मैं डेस्क्टॉप फोल्डर चुनूँगा
अब पिक्चर को चुनें जिसे हम प्रविष्ट करना चाहते हैं और ओपन बटन पर क्लिक करें
पिक्चर स्लाइड में प्रविष्ट हो जाती है
बदलाव को अन्डू करें
चलिए मैं पिक्चर प्रविष्ट करने के लिए अन्य तरीके का वर्णन करता हूँ
इंसर्ट और स्लाइड पर क्लिक करके ओवरव्यू नामक स्लाइड के बाद एक नई स्लाइड प्रविष्ट करें
टाइटल टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक करें और टाइटल को ओपन सोर्स फनी में बदलें
केंद्र में 4 आइकन्स युक्त एक छोटे बॉक्स पर ध्यान दें
यह इनसर्ट टूलबार है
इनसर्ट टूलबार में इंसर्ट पिक्चर आइकॉन इनसर्ट पिक्चर आइकन पर क्लिक करें
पिक्चर चुनें और ओपन बटन पर क्लिक करें
ध्यान दें कि प्रविष्ट की हुई पिक्चर लगभग पूरी स्लाइड को कवर करती है
आप पहले इसपर क्लिक करके और कंट्रोल प्वॉइंट का कुशलतापूर्वक उपयोग करके इमेज का आकार और साइज बदल सकते हैं
इसी तरह से हम अपनी प्रस्तुति में अन्य ऑब्जेक्ट भी प्रविष्ट कर सकते हैं जैसे कि चार्टस और मूवी क्लिप्स
इन सभी संभावनाओं को जाँचें
अब सीखते हैं कि हाइपरलिंक कैसे करें
हाइपरलिंकिंग आपको प्रस्तुति से एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर आसानी से जाने या वेबपेज या डॉक्युमेंट ओपन करने की अनुमति देता है
पहले हम देखेंगे कि प्रस्तुति में हाइपरलिंक कैसे करें
ओवरव्यू नामक स्लाइड के बाद नई स्लाइड प्रविष्ट करें
टाइटल पर क्लिक करें और टेबल ओएफ Contentsटाइप करें
बॉडी टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक करें और निम्न प्रकार से उत्तरवर्ती स्लाइड का टाइटल टाइप करें
ओपन सोर्स फनी थे प्रेजेंट सिचुएशन डेवलपमेंट यूपी टो प्रेजेंट पोटेंशियल अल्टरनेटिव्स रिकमेंडेशन डेवलपमेंट यूपी टो प्रेजेंट टेक्स्ट लाइन को चुनें
इंसर्ट और हाइपरलिंक पर क्लिक करें
यह हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स ओपन करेगा
बाएं पैन पर डॉक्यूमेंट चुनें
फिर दाएँ फील्ड के टार्गेट इन डॉक्यूमेंट बटन पर क्लिक करें
इस प्रस्तुति में मौजूद स्लाइड्स की सूची ओपन होती है
सूची से डेवलपमेंट अप्टो प्रेजेंट नामक स्लाइड चुनें
इस सूची में एप्ली बटन पर क्लिक करें और फिर क्लोज बटन पर क्लिक करें
हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स में फिर से एप्ली बटन पर क्लिक करें और फिर क्लोज बटन पर क्लिक करें
स्लाइड में कहीं पर भी क्लिक करें
अब जब आप अपना कर्सर टेक्स्ट पर घुमाते हैं तो कर्सर प्वॉइंटिंग फिंगर में बदल जाता है
इसका अर्थ है कि हाइपरलिंकिंग सफलतापूर्वक हो गयी है
हाइपरलिंक किए हुए टेक्स्ट पर क्लिक करना आपको उचित स्लाइड पर ले जाता है
अन्य डॉक्युमेंट को हाइपरलिंक करने के लिए चलिए कन्टेंट्स स्लाइड के टेबल पर वापस चलते हैं
अब दूसरी लाइन जोड़ें External डॉक्यूमेंट टेक्स्ट की लाइन को चुनें और इंसर्ट पर क्लिक करें और फिर हाइपरलिंक पर क्लिक करें
बायें पैन में डॉक्युमेंट चुनें
डॉक्युमेंट पाथ फील्ड के दायें फोल्डर आइकन पर क्लिक करें
डॉक्युमेंट चुनें जिसे आप हाइपरलिंक करना चाहते हैं
हम resumeओडीटी चुनेंगे
जिसे हमने राइटर सीरिज में बनाया है और ओपन बटन पर क्लिक करें
हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स में एप्ली बटन पर क्लिक करें और फिर क्लोज बटन पर क्लिक करें
स्लाइड पर कहीं भी क्लिक करें
अब जब आप अपना कर्सर टेक्स्ट पर घुमाते हैं तो कर्सर प्वॉइंटिंग फिंगर में बदल जाता है
इसका अर्थ है कि हाइपरलिंकिंग सफलतापूर्वक हो गयी है
अब हाइपरलिंक किए हुए टेक्स्ट पर क्लिक करना आपको उचित डॉक्युमेंट पर ले जाता है
यहाँ यह हमें resumeओडीटी पर ले जाता है
वेबपेज को हाइपरलिंक करना समान है
प्रस्तुति के अंत में एक नई स्लाइड प्रविष्ट करें
टाइटल को एसेंशियल ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में बदलें
बॉडी टेक्स्ट बॉक्स में उबुंटू लिब्रे आफिस टाइप करें
टेक्स्ट की दूसरी लाइन को चुनें और इंसर्ट पर क्लिक करें और फिर हाइपरलिंक पर क्लिक करें
बायें पैन पर इंटरनेट चुनें
हाइपरलिंक पेज में वेब चुनें
टार्गेट फील्ड में wwwlibreofficeorg टाइप करें
हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स में एप्ली बटन पर क्लिक करें और फिर क्लोज बटन पर क्लिक करें
स्लाइड पर कहीं भी क्लिक करें
अब जब आप अपना कर्सर टेक्स्ट पर घुमाते हैं तो कर्सर प्वॉइंटिंग फिंगर में बदल जाता है
इसका अर्थ है कि हाइपरलिंकिंग सफलतापूर्वक हो गयी है
अब हाइपरलिंक किए हुए टेक्स्ट पर क्लिक करना आपको उचित वेब पेज पर ले जाता है
आखिर में टेबल्स डेटा को कॉलम्स और रोव्स में सुव्यवस्थित करने के लिए उपयोगी होते हैं
चलिए अब सीखते हैं कि लिबर ऑफिस इंप्रेस में टेबल कैसे जोड़ें
स्लाइड पैन से डेवलपमेंट यूपी टो थे प्रेजेंट नामक स्लाइड चुनें
टास्क पैन में लेआउट सेक्शन से टाइटल और 2 कन्टेंट आइकन चुनें
बायीं ओर के टेक्स्ट बॉक्स में टेक्स्ट चुनें
और फॉन्ट साइज 26 तक कम करें
दायीं ओर टेक्स्ट बॉक्स में केंद्र में इनसर्ट टूलबार से इंसर्ट टेबल आइकन पर क्लिक करें
डिफॉल्ट रूप से कॉलम्स की संख्या 5 और रोव्स की संख्या 2 प्रदर्शित होती है
हम कॉलम्स की संख्या 2 में और रोव्स की संख्या 5 में बदलेंगे
ओक बटन पर क्लिक करें
चलिए टेबल को बढ़ायें ताकि टेक्स्ट पठनीय हो
निम्नानुसार टेबल में डेटा एंटर करें
इम्प्लीमेंटेशन यियर 2006 10 2007 20 2008 30 2009 40 अब टेक्स्ट को बोल्ड और मध्य में करने के लिए हेडर रोव्स के फॉन्ट को बदलते हैं
टेबल के कलर को बदलने के लिए पहले पूर्ण टेक्स्ट को चुनें
फिर टास्क पैन पर टेबल डिजाइन सेक्शन से टेबल स्टाइल चुनें
मैं इसे चुनूँगा
देखें अब टेबल कैसा दिखता है
अब हम इस ट्यूटोरियल की समाप्ति की ओर हैं
संक्षेप में इस ट्यूटोरियल में हमने सीखा कि पिक्चर कैसे प्रविष्ट करें और इन्हें फॉर्मेट कैसे करें
प्रस्तुति के अंदर और बाहर हाइपरलिंक करना और टेबल्स प्रविष्ट करना
000849 000842 इस व्यापक नियत कार्य को करने की कोशिश करें
नई प्रस्तुति बनाएँ
तीसरी स्लाइड में पिक्चर प्रविष्ट करें
4थ स्लाइड में 2 रोव्स और 3 कॉलम्स वाला टेबल बनाएँ
टेबल की रो 2 कॉलम 2 में स्लाइड 3 टाइप करें
इस टेक्स्ट को तीसरी स्लाइड से हाइपरलिंक करें
निम्न लिंक पर उपलब्ध विडियो देखें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
अधिक जानकारी के लिए कृपया contactspoken हाइफेन ट्यूटोरियल डॉट ओआरजी पर संपर्क करें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
इस मिशन पर अधिक जानकारी के लिए उपलब्ध लिंक पर संपर्क करें httpspoken tutorialorgNMEICT Intro यह स्क्रिप्ट देवेन्द्र कैरवान द्वारा अनुवादित है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
हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद